ऊपर एक टावर दिखाई दे रहा है।

एक रेस्टोरेंट जैसा दिखाई दे रहा है।

ये एक चश्मे की दुकान नजर आ रहा है।

यहां एक मंच जैसा बना हुआ है जहां सिरी भी लगा हुआ है।

यह एक रेस्टोरेंट है यहां दो तीन लोग बैठकर पिज्जा खा रहे हैं।

चार पांच लोग यहां खड़े हुए हैं।

नीचे बहोत सारा गाड़ी रखा हुआ है।

एक औरत के मांग में बहुत बड़ा सिंदूर लगा हुआ है।